और नाव पर लड़का एक खड़ा हुआ है जो अपनी फोटो खिचवा रहा है।

बादल बन रखे हैं जिसको एडिट किया हुआ है साथ में दो वृक्ष भी दिख रहे हैं।

एक तरफ लाइटिंग लगी हुई है दूसरी तरफ एक और बिल्डिंग है जो चार मंजिला बिल्डिंग है। शायद

जो उपर से कवर है। यहाँ पे एक जानवर है।